सामने जो दिख रहा है यह एक ऊम चारु ओ और का एक ऊम प्राचीन मंदिर है।

यह जैसा कि हम देख पा रहे है यह एक पार्क है और पार्क में सेव बर्ड करके एक किसी ने वह लगाया हुआ है।

काफी अच्छा नजारा देखने को दिख रहा है और जैसे कि अपन देख पा रहे है बहुत अच्छा नजारा है।

और साथ में अपना एक वेट करने का मशीन रखी हुई है साथ में जो पेटी में रखी हुई है और कलर है। और--

और अ इस्त्री किए जाते है टेलरिंग की शॉप है यहाँ पे कही सारे खूब सारे कपडे रखें --